है जहाँ पर हरी-हरी घांसे लगी है।

और यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बड़े से और हरी घासे भी है छोटी-छोटी।

और लाल कलर की मेट बिछी हुई है यहाँ पर और बस ये भी दिखाई दे रही है।